बहुत ही अच्छा लगता है उधर लाइट पंखे बहुत बड़ा आदमी होगा बहुत ही अच्छा--

हेलमेट है आदमी लगता है तो तिन सो लगता है बहुत ही बड़ा है।

यहां पे बहुत ही पहाड़ है बहुत ही अच्छा लगता है।